और बहुत ही उचित दामो पर यहाँ पे सामान मिल जाता है और यहाँ पर एक काउंटर भी बना हुआ है यह काउंटर काफी बड़ा लग रहा है काफी बढ़िया लग रहा है।